और उस जमीन के उपर कुछ घास लगे हैं अब |

है इसके पीछे कुछ टीने की दिवार भी दिखाई दे रही है।

किनारे किनारे की तरफ एक दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे --